पेट्रोल पंप की तस्वीर है।

एक आदमी अपनी कार की--

जोत रखी हुई हैं इसमें कुछ--

ये ऑफिस की तस्वीर है।

सर्टिफाइड प्री ओंड का शोरूम है।

टैंकियों का कलर व्हाईट --

फोटो लगाई जाती है।